ऊपर में कई सारे लाइट जलते हुए दिखाई दे रहे है।

इस दृश्य में कई सारे कपबोर्ड बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

सामने की तरफ बॉउंड्री की हुई है ऐसा लग रहा है कि यह एक डैम है।

पीछे की तरफ बहुत सारे पाइप लगे हुए हैं पाइप के टुकड़े लगे हुए हैं।

इस दृश्य में हमें कुछ औरत दिखाई दे रहे हैं।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

यहां पर कई सारे ऊपर की तरफ बॉटल रखे हुए हैं बॉटल के ऊपर कई सारी अगरबत्तियां रखी हुई हैं।